और सफेद कलर का शर्ट पहना ब्लैक कलर पैंट पहना और एक ने ब्लैक और व्हाईट कलर का--

एक घर देख पा रहे हैं जो की नीला कलर का है और पीछे एक दुगो पेर देख पा रहे हैं बरे बरे ।